जंगल है। जांगले में हरा गाँव जमा हुआ है। और जंगल कोहरे से दुन्दला दिख रहा है। और हरा पेड़ पौधा जो नीचे है। और एक सौ पत्तियाँ है।

एक बड़ा सा मैदान है। जिस मैदान में हरी घांस जमी हुई है। अगल बगल हरे पेड़ पौधे है। और एक सामने बिल्डिंग है। और बादल सपेद है।

एक चट्टान ही चट्टान है जिस चट्टान में नीचे एक नीचे कुछ कचरा जमे हुए हैं और पत्थर ही पत्थर है अगल-बगल हरे पेड़ पौधे हैं और हरा घास है|

एक मैदान है जिसमे हरा घास जमा हुआ है और एक गाड़ी है जे जो गाड़ी खड़ा है।

एक डस्टबिन सामने रखा हुआ है नीचे हरे घास जमे हुए है अगल बगल हरे पेड़ पौधे ये भी है।